नीले रंग की चेयर है पिंक कलर की चेयर है।

पौधे लगे हुए हैं एक आदमी नीले रंग का शर्ट पहना है सामने एक टिने का शेड है एक पानी टंकी है नीले रंग की आस पास पेड़ भी है।

बहुत सारे पौधे रखे हुए कुछ टेंट भी लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में जो फोटो आई है एक कैफे शॉप की है। उनकी एक आइसक्रीम की शॉप की है।

सभी ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं सर में सफेद रंग की टोपी पहने हुए हैं।

यह तस्वीर में जो फोटो है यह गार्डन की है जिसमें डॉल्फिन करके एक बैनर लगा हुआ है।

एक ही है जिसमें बाहर तीन गाड़ियां खड़ी हुई है एक आदमी है जिसने नीले रंग का जींस पहना है।